एक सज्जन दूध खरीद रहे है तथा एक सज्जन ने अपनी कॉपी में नोट कर रहे है वकायदा --

ये बहौत ही अच्छा लग रहा है यह दो हंसो का जोड़ा है।

यह जिम का बड़ा ही सूंदर दृस्य है यहाँ पर डंबल रखे हुए हैं।